और इसके बाहर एक मगरमच्छ भी पड़ा हुआ है।

और एक की बेंच भी है और एक दीवाल पर बोर्ड भी लगा हुआ है।

और इसमें बहुत सारे आदमी भी है।

और बहुत सारे आदमी है और बहुत सारे कुर्सियां भी है।

यह एक बहुत ही बड़ा अस्कुल है और इसमें बहुत सारी खिड़कियां भी है।

और बाहर एक डंडा भी धरा हुआ है।

यह एक दुकान है और इसमें बहुत सारे खिलौने है।

और बहुत सारी लाइटां भी है और एक लकड़ी का पालना भी है।